और पेड़-उड़ भी है पेड़ भी अच्छा लग रहा --

उसके बाद दो गाडी लगा हुआ है।

अच्छा है बोहोत बड़ा मैदान है ऐसा लग रहा है।

और घर भी नज़र आ रहा है।